गल गलती है जोकि इन्होंने काफी अच्छा ऑफिस बनाया है ये।

देखो यहां मेला लगता हूं --

देखो भाई शादी का यहाँ पे लड़के-लड़कियों का लोग फोटो लगा दिया है। कितना अच्छा फोटो आया है यार उनका और ये सजाया भी बोहोत अच्छा गया है मंडप को काफी सुंदर लग रहा है।

ये जैसी भी बना रखी है मिट्टी की अच्छी लग रही है काफी --

इस फील्ड में कित्ती हरी-भरी घास है और ये गोल-गोल एक राउंड है।

भाई देखो यहां शादी हो रही है और यह पंडित फेरे करवा रहे हैं इनके और यहां फैमिली खड़ी हुई है पूरी।

काफी अच्छा लगा यहां पे और यह मंडप भी काफी अच्छा है बोहोत बड़ा मंडप है ये।

और वो देखो पीछे का एक बादल कितने अच्छे लग रहे हैं। रेड कलर के बादल और आसमानी कलर के। कितना मस्त नज़ारा है ना यार यहाँ पे।

सेलून वाले के यहाँ --